पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक ग्राउंड में कुछ हरियाली दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक हाल और एक खिड़की दिखाई दे रही है।

यहां पर एक खिड़की दिख रही है। खिड़की के उस तरफ एक महिला और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

एक टेबल दिख रही है बैठने के लिए एक पोस्टर लगा हुआ है वह दिखाई दे रहा है।

फूल लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड मे। कुछ हरियाली लगी हुई है।

जो दिखाई दे रहा है। एक पेड़ दिखाई दे रहा है। एक कार दिखाई दे रही है। एक महिला दिखाई दे रही है और एक झोपड़ी दिखाई दे रही है जो बनी हुई है। एक गाड़ी खड़ी हुई है जो दिखाई दे रही।

यहाँ पर एक चर्च दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो लगे हुए हैं। एक कांच का गेट दिखायी दे रहा है।

यहां पर कुछ दीवालें उठ रही हैं जिसपर कुछ लोहे के पाइप लगे हुए हैं और ऊपर कुछ लोहा लगा हुआ है। ग्राउंड सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नदी के किनारे गाड़ियां और साइकिल खड़ी हुई है जो दिखाई दे रही हैं। पुल बना हुआ है जो दिख रहा है। एक नाव दिख रही --